ये तो लग रहा है कि रेक्सा है इसमें प्रचार कर रहा है क्या।

इसमें कॉपी भी लग रहा है इसमें आदमी एक फोन से बतिया रहा है इसमें पेड़ पौधा है इसमें--

रखा ही क्या है नमकीन बिस्कुट चाय चाय ओय का पैकेट लग रहा होर्लिस लग रहा है इसमें बिस्कुट लग रहा है।